इस दृश्य में मुझे दो बसें --

इस दृश्य में मुझे एक--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

इस दृश्य में मुझे एक मंदिर--

इस दृश्य में मुझे बहुत सारे घर--

इस दृश्य में मुझे बहोत सारे--

उस दुकान में बहोत सारा सामान और दो आदमी नजर--

खड़े नजर आ रहे है।

गाड़ियां नजर आ रही है।